ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

शटर का रंग नीला है और ऊपर सफेद रंग का कलर किया हुआ है।

चार भगवान की फोटो लगी हुई है।

बहुत बड़ी है छोटे छोटे बॉक्सेस में अलग अलग तरह की बुक्स पड़ी है।

पूजा में कुछ लोग बैठे हैं।

बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं खंभे लगे हुए हैं गमले नीले गुलाबी--

जिसने गुलाबी कलर की टी शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है जो कार को देख रहा है।

और इसके अंदर स्पोर्ट्स का समान पड़ा है।

और पैलेस में लड़ियों का काम हुआ हुआ है।

लड़ियां हरे रंग और पीले रंग की हैं।

कुछ खुल हुआ सीमेंट बाहर पड़ा है।

कई तरह के जॉगर हैं जिससे की एक्सरसाइज की जाती है।

पेड़ के नीचे खड़े हैं दूरी पर--

लड़का रंग को अच्छी तरह से उड़ा रहा है।

पुराना करो और कई छोटी छोटी और--

कुछ लोग स्लाइडों पर आ रहे हैं और कुछ देख रहे हैं।

और सनग्लासेस का कलर ब्लैक --

तीन तरह की कारे पड़ी है।

दो तरह के मोटरसाइकिल पड़े हैं।

सफेद रंग का है एक ब्लैक क--

ब्लैक कलर की घड़ी बल लगी हुई है।

यह एक कार ठीक करने वाली--